यह इमेज एक बंद कमरे का है जिसमें तीन लोग आपस में हाथ मिला रहे है वो अपने दोनों हाथ जोड़ के हाथ मिला रहे हैं।

जिसने ब्लैक कलर का लोअर और ब्लैक कलर का बानियान पहना हुआ है।

यह इमेज एक इंस्टिट्यूट का है जो की इंडियन इंस्टिट्यूट है और इसका नाम भारतीय प्रबंध संस्थान बोध गया है इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया लि--

यह इमेज एक शहरी एरिया का है जिसमें एक ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है भारतीय डाक इंडियन पोस्ट इस ए.टी.एम. के सामने कुछ लोग भी दिखाई दे रहें हैं जो की मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं और वो जा रहें --

यह इमेज एक हेयर कटिंग सैलून का है। यह हेयर कटिंग सैलून बहुत ही साफ सुथरा है इसमें अंदर की और गुब्बारें लगे हुए हैं और इसमें कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं जो --

यह इमेज एक बुक सेंटर का है जिसमें बहुत सारी बुकें दिखाई दे रहीं हैं इसमें एक आदमी नजर आ रहा है।